फत्तरों पर से पानी गिर रहा झरना है ये--

यहां पर बहोत सारे पेड़ पौधे हैं और यहां पर इधर साइड में आदमी खड़े--

और इधर साइड पेड़ पौधे लगे हैं ये गाड़ियां वगैरह रखी है एक आदमी खड़ा है इधर के साइड में भी है गाड़िया।

यहां पर अ रोड है और एक बाइक जा रही है और अ इधर के साइड में बहोत सारे पेड़ पौधे हैं।

बैग रखे है बहुत सारे और इधर एक खिड़की एक लगी है एक खुली है।